यहां एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप के अंदर बहुत सारे शेल्व्स हैं और यहां पे बहुत सारे--

ये एक पेट शॉप है यहाँ पे बोर्ड लिखा है वेलकम टू शारपट हाउस यहाँ पे पानी का ड्रम है और बहुत सारे --

पेडिग्री फूड पैकेट्स दिखाई दे रही है और यहाँ पे काउन्टर --

यहां बड़ा सा फत्थर दिखाई दे रहा है और पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा है।

यहाँ बड़ा सा मैदान है और यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं।

और यहां पे हरी-भरी घास दिखाई दे रहे हैं बड़े पेड़ है और यहां पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स घर दिखाई दे रही --

ये एक छोटी सी होटल दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं यहाँ पे --

एक कंप्यूटर रूम दिखाई दे रहा है बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कीबोर्ड्स हैं।

यहाँ पे वॉचेस और गोगल्स की दुकान दिखाई दे रही है बहुत सारे छोटी लाइट्स और फैन दिखाई दे रहे हैं --

यहां बड़ा सा सड़क दिखाई दे रहा है और यहां आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ चेयर है बहुत सारे डेस्क दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे बैट बॉल है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े हरे पेड़ हैं यहाँ ग्राउंड के पास यहाँ पे बहुत सारे लोग बैलून्स लेकर बैठे --

यहां बहोत सारे फूलों के माला लगे हैं बहोत सारे अलग अलग रंग की बुके हैं।

पेंटिंग्स है और यहाँ बड़े-बड़े हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग --